यह एक होटल है। जहां पे लोग ठहरते है खाना खाते है। और यह देखने मे काफी अच्छे लग रहे है।

और इसके आगे रोड है जिस पर कार चलती है गारन्टी है।

इसमे बहोत सारे डंबलस वगैरा रखे हुए है।